और कुछ पन्नी या फोटो को सेपने के लिए एक डब्बा रखा हुआ है जिसके अंदर गोंद--

ये स्कूल है स्कूल के अंदर जा रहा हैं एक माता और स्कूल का रास्ता कच्चा हैं और उधर नीम भी लगे हुए हैं।